दीवार पर पिलर नीले रंग से पैंट किए गए हैं।

यह भीड़ा रोड ठठा चो रोस्डा समस्तीपुर का है।

ट्री के सामने लेक्चर स्टेड और गिफ्ट रखे हुए दिखाई दे रहे है।

पार्क से भी आगे लाल और काले रंग की कुर्सियां लगाई गई है।

जो की ग्रे रंग का बोर्ड है इस दुकान को गेंदे के फूलों से सजाया गया है। दुकान के सामने टाइले लगाई गई हैं।